यह फोटो किसी गर की है जहां पर खिड़की पर छोटे छोटे पर्दे लगाये गए हैं जो कि भूरे कलर में हैं।

यहां पर एक ये टेबल है उसके ऊपर गीता लगाया गया गया है जो कि सफेद रंग में है और पास में अलमारी बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

और पास में बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हैं और कुछ पेड़ों के नीचे साइकिले खड़ी है।

ना और यहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए कई छोटे छोटे सजावट के पौधे भी लगाए गए हैं।

और यहां पर बहोत सारी बच्चियों खड़ी हैं जो एक स्टील की टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है।

और कुछ बॉक्सेस भी रखे हुए हैं।

अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग चीजें रखी--

दिखाई दे रही है जहां पर एक काउंटर बना हुआ है उस दो बाहर भी एक कोई खुशी रखी हुई है जो कि स्टील की लगी हुई है।

एक ऑफिस बना हुआ है जो जिस पर रेड सजावट किया गया है यहां पर बहोत सारे सजावट के लिए गुब्बारे भी लगाए गए --

गुब्बारों का रंग अलग अलग है सफेद पीला और बैगनी है और सामने काउंटर पर एक व्यक्ति खड़ा है।

यह फोटो किसी एक कॉलोनी की है यहां पर गाड़ी खड़ी है जो की महिंद्रा की है।

सामने एक बहोत बड़ी पानी की टंकी दिखाई दे रही है यह एक कोई दो या तीन मंजिला पर कार्य चल रहा है।

यह फोटो किसी बड़े हॉल की दिखाई से रही है जिसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और बहोत --

बाहर बहोत सारी बाइके खड़ी हैं ये व्यक्ति एक कुर्सी पे बैठे हैं जिसका रंग नीला है।

सामने बहोत सारे घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पहाड़ियां दिखाई दे रही है जो पत्थरे की पथरीली पहाड़ी है।